हमें यहां पर- बहुत सारी--अ बहुत सारी स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं हमें यहां पर लोगों के हाथ भी दिखाई दे रहा है हमें यहां पर गेट दिखाई दे रहे हैंपील कलर

पाइप हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं हमें यहां-- पर डेर कलर का कारपेट दिखाई दे रहा है रोड दिखाई दे रहा है।

हमें इहा पर एक दुकान दिखाई दे रही हैं हमें यह पर बहुत सारे पैकर्स दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पर टॉबेल्स दिखाई दे रा--

हमें यहां पर एक रोड दिखाई दे रहा है हमें यहां पर बहुत सारी पंक्तियां दिखाई दे रही है जो की प्लास्टिक की बनी हुई है हमें छेड़ा दिखाई दे रहा है।

हमें यहां पर एक शोरूम दिखाई दे रहा है एक स्टैचू दिखाई दे रहा है जिसने जींस पहनना है और रेड कलर की शर्ट पहनी है हमें यहां पर बहुत सारी फ्रॉक्स दिख रही है।